यह एक मंदिर का तस्वीर है।

इस तस्वीर पे एक इंसान बैठा हुआ है।

होटल का साइड में पार्किंग का जगह दिख रहा है।

यह तस्वीर में दरवाजा के उस पार कुछ गाड़ी भी दिख रहे हैं।

यह एक मकान का फोटो है।

यह एक समारोह का मंजर है।

कुछ लोग इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं।

कुछ ऑरेंज कलर का घास भी दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल की ईमारत है ईमारत सफेद रंग की हैं।

स्कूल के बाहर बसें खड़ी हुई हैं।

सामने एक बड़ी कढ़ाई दिख रही है जिसमें की और भी खाना हो सकता है।

इस दुकान पे दो लड़के अपना मुंह छुपा रहे हैं।

पीछे तरफ तीन टावल लटके हुए हैं।

आगे तरफ दो इंसान दिखाई दे रहा है।

में कुछ चार भी हैं।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

यह तस्वीर में कुछ फूल के पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यह फोटो में बहुत सारे मोबाइल भी दिख रहे हैं।

गोल्ड पोस्ट का साइड में बम्बू का पेड़ लगा हुआ है।

मैदान का साइड का स्कूल का छत टीन का है।

यह तस्वीर को देखके लग रहा है कि यह तस्वीर एक लाइब्रेरी का है जिसमें चार इंसान बैठे हुए हैं।

और यह तस्वीर में एक लड़का एक इंसान का चूल भी काट रहा हैं।

गाड़ी के साईड पे कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में एक एरोप्लेन दिख रहा है जिसका कलर सादा और लाल है।

मैदान के उस पार हम लोग को दो बिल्डिंग्स दिख रहे है।

इस दुकान के अंदर हमें एक इंसान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हम लोग को बहोत सारे पेड़ दिख रहे है।